क्टर्टल में कॉमन एरर्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
सिंटैक्स एरर्स रनटाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1204 क्टर्टल वर्जन 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
हम मानते हैं कि आपको क्टर्टल के कार्य का बुनियादी ज्ञान है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
पहले समझते हैं कि एरर क्या है
एरर प्रोग्राम में एक गलती है जो इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड परिणाम देता है
पहले मैं एरर के प्रकारों के बारे में समझाऊँगी
सिंटैक्स एरर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन है
कंपाइलेशन असफल होता है जब प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर्स होती हैं
सिंटैक्स एरर्स पता करने और फिक्स करने में आसान होती हैं
उदाहरणस्वरूप अन्मैच्टड पेरेंथीसेस स्क्वेयर और कर्ली ब्रेसेस
वेरिएबल का उपयोग जो घोषित नहीं की गई हैं
स्ट्रिंग्स में अनुपस्थित क्वोट्स एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
क्टर्टल आइकन पर क्लिक करें
अब सिंटैक्स एरर्स के कुछ प्रकारों के साथ ट्यूटोरियल शुरू करते हैं
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है
प्रोग्राम में एरर को समझाने के लिए मैं कोड के भाग को कमेंट करूँगी
यहाँ मैं इस लाइन को कमेंट करूँगी
aask विथिन डबल क्वोट्स enter एनी नंबर एंड क्लिक ओक मैं लाइन को कमेंट करने के लिए hash चिन्ह का उपयोग करूँगी
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
प्रोग्राम रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कंपाइलर निम्न एरर दर्शाता है
वेरिएबल a वास यूज्ड विथआउट फर्स्ट बेइंग असाइन्ड टो आ वैल्यू
यहाँ एरर लाइन संख्या 4 पर है
यह सिंटैक्स एरर है
यह हुआ क्योंकि वेरिएबल आ घोषित नहीं था
अतः मैं लाइन 2 पर जाऊँगी और कमेंट हटा दूँगी
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
आ वेल्यू के लिए 6 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है
मैं क्टर्टल एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूँगी
क्लीयर कमांड टाइप करें और कैनवास साफ करने के लिए रन करें
अब अन्य एरर देखते हैं
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में एक प्रोग्राम पहले से ही है
यहाँ क्टर्टल में पी की वेल्यू पहले से ही दी गई है
प्रोग्राम में चिन्ह को डिलीट करें
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कंप्लायर निम्न एरर दर्शाता है
यू कैनोट पुट हेरे यह एरर लाइन संख्या 2 पर है
यह सिंटैक्स एरर है यह हुआ क्योंकि यहाँ वेरिएबल का कंटेनर नहीं है
प्रोग्राम पर वापस जाएँ चिन्ह बदलें
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कोण की वेल्यू के लिए 45 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है
स्ट्रिंग का एक क्वोट्स हटा दें
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल्स एडिटर में पेस्ट करूँगी
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कंप्लायर निम्न एरर दर्शाता है
टेक्स्ट स्ट्रिंग वास नोट प्रॉपरली क्लोज्ड एक्सपेक्टेड आ डबल क्वोट टो क्लोज थे स्ट्रिंग
यहाँ एररर लाइन संख्या 2 पर है
मैं वापस लाइन संख्या 2 पर जाऊँगी और क्वोट्स को हटा दूँगी
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल्स एडिटर में पेस्ट करूँगी
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
कोण की वेल्यू के लिए 45 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है
इस तरह से आप उस लाइन का पता लगा सकते हैं जिसमें एरर आ रही है और इसे सही भी कर सकते हैं
अब रनटाइम एरर्स के बारे में सीखते हैं
run टाइम एरर प्रोग्राम के निष्पादन के समय आती है
यह प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है जब आप इसे रन करते हैं
रनटाइम एरर्स सामान्यतः यूजर द्वारा गलत इनपुट के कारण होती हैं
कंपाइलर इन एरर्स का पता नहीं लगा सकता
उदहारणस्वरूप एक वेरिएबल द्वारा विभाजित करने की कोशिश जिसमें वेल्यू न हो
टर्मिनेटिंग कंडिशन या इंक्रीमेंट वेल्यू के बिना एक लूप रन करना
मैं एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूँगी
क्लीयर कमांड टाइप करें और कैनवास को साफ करने के लिए रन करें
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है
यह प्रोग्राम दो नम्बरों का विभाजन करता है
आ भाज्य है और र भाजक है
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल्स एडिटर में पेस्ट करूँगी
ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल्स एडिटर में टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
आ के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
र के लिए 0 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
यहाँ हमें रनटाइम एरर मिलती है यू ट्राइड टो डिवाइड बाय ज़ेरो यह एरर लाइन संख्या 4 पर है
यह एरर हुई क्योंकि हमने ज़ेरो के साथ संख्या विभाजित नहीं कर सकते हैं
फिर से रन करें
आ के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
र के लिए 2 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
प्रोग्राम बिना एरर के रन होता है
मैं क्टर्टल एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूँगी
क्लीयर कमांड टाइप करें और कैनवास को साफ करने के लिए रन करें
अब हम लॉजिकल एरर्स के बारे में सीखेंगे
लॉजिकल एरर प्रोग्राम के सोर्स कोड में एक गलती है जिसका परिणाम इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड व्यवहार है
उदाहरणस्वरूप गलत वेरिएबल में वेल्यू निर्दिष्ट करना
दो संख्याओं का जोड़ के बजाय गुणा करना
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने क्टर्टल एडिटर में टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
अब प्रोग्राम रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स पॉप अप्स होता है ओक पर क्लिक करें
लूप एक इन्फिनाइट लूप में जाता है
हम देखते हैं कि व्हाइल लूप 31 से संख्याएँ प्रिंट करता है और अभी तक प्रिंट कर रहा है
यह एक लॉजिकल एरर है
व्हाइल कंडिशन में एक्स 20 अधिक है
लेकिन वेरिएबल एक्स हमेशा 20 से अधिक होता है
अतः लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होता
मैं प्रक्रिया को एबॉर्ट करने के लिए एबोर्ट बटन पर क्लिक करूँगी
xx1 को xx 1 में बदलें
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूँगी और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
प्रोग्राम को रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स पॉप अप्स होता है ओक पर क्लिक करें
लूप 29 से 20 तक वेल्यू को प्रिंट करने के बाद टर्मिनेट होता है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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एरर्स और एरर्स के प्रकार जैसे वेरिएबल का उपयोग जिसे घोषित नहीं किया गया है
स्ट्रिंग्स में अनुपस्थित क्वोट्स रनटाइम एरर्स और 001030 001002 लॉजिकल एरर्स एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप दिए गए प्रोग्राम्स में एरर पता करें
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद